दूसरे प्राणी को घूर रहा है।

और उसकी बाइक उसके दुकान के सामने खड़ी है कुछ कैटरस और ट्रे भी वहाँ रखे गये हैं ।

वह कार बहुत मैली और खराब दिख रही है।

दिख रहे है। कुछ गेम्स खेल रहे --

यहाँ पे आपको एक बार जरुर विजिट करना चाहिए।

इमेज में कुछ पुरानी बसेस एक जगह --

इमेज एक स्कूल की दिखाई दे रही है। जहां पे आसपास फिलहाल कोई भी नहीं दिखाई दे रहा और --

और कुछ लोग आजू बाजू घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।